यहां पर जमीन पर कच्ची जमीन के ऊपर सोफा रखा हुआ बड़ा सोफा रखा हुआ दिखाई दे रहा है दो छोटे सोफे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक होटल के रूम टाइप दिखाई दे रहा है जिसमें व्हाइट कलर के गद्दे और रजाई लगी हुई है उस पर कवर तकिए रखे हुए है।

यहाँ जमीन के ऊपर कच्ची जमीन है आज जंगल टाइप दिख रहा है आसपास में छोटे-छोटे द पेड़ दिख रहे है।

यहाँ बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे है पहाड़ के ऊपर घास फूस लगी हुई है।